और यहां पे गिरजा घर लिखा हुआ है ये कोई --

और दुसरे कुछ दवाईयां दे रहे हैं और ये कुछ दवाईयां नीचे रखी हुई हैं।

और सामने बहुत सारे आदमियों का भीउर लगा हुआ है।

और तरकुल का पेड़ है। सामने छोटे-छोटे प पेड़ हैं। झाड़ियाँ दिख रही हैं।

जिसके सामने कुछ पत्थर रखे हुए हैं रोड पे कुछ लोग टहल रहे हैं।

लोहे का ऊपर पुल बनाया गया है हमको लग रहा रेलवे का रेल रेलवे गाड़ी वाला पटड़ी है ये।

उस पर पुल के ऊपर रेल गाड़ी का पटरी बनाया गया है।

ये रोड के किनारे नेक्सोन टाटा नेक्सोन सर्विस सेंटर है लिखा हुआ है इसपे।

और वो लाइट ओइट लग रहा है। नदी का किनारा है जहाँ पे तम्बू लगाया गया है।

ये कोई-न् बहुत बड़हन नदी का कोई ये घांट है जिसके किनारे ये छोटे-छोटे लाल पीयर हरे गुलाबी बैंगनी कलर के नाव खड़े हैं। नाव के ऊपर ये पतवार रखा जिससे नाव को खेया जाता है।

और ये पेपर के टुकड़े पर इसको रखा गया है।

और वो बड़ा-बड़ा टब रखा गया है डस्ट बिन रखा गया सामने डस्ट बिन है।